स्कूल की आगे चद्दर पर मछलियाँ रखी हुई है इस आदमी की दोनो हाथ गन्दे दिखाई दी रहे हैं और इसने सर पर गमछा बांधा हुआ है और वहाँ --

--पर एक शिक्षक दिखाई दे रहे है जो कक्षा के अंदर बच्चों को कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे है बच्चे यहाँ पर बच्चे सभी अपना अपना झुण्ड बनाकर बैठे हुए है और कुछ करते हुए दिखाई दे रहे --